इस पिक्चर में एक क्लास का दृश्य प्रतीत होता है।

जिसमें हमारी स्मार्ट क्लासेस चल रही है।

साथ में एक छोटा बच्चा को काले रंग की कुर्सी पर बैठा है।

यह पिक्चर किसी घर की दिखाई दे रही है जहां पर कार्ड से बने --

पीछे एक पेप्सी का फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

पीछे दीवार पर पीला रंग है और पैड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

मेडिकल की लग रही है जहां पे बाहर एक पार्क दिखाया जा रहा है पार्क के बीच में एक गोल चकेरा भी है।

जोकि बैंड कंपनी और इंटेक्स कंपनी के दिखाई दे रहे हैं।

इंडिया की प्रतीत हो रही है जोकि गुड़गांवा में है।

साथ में एक आदमी संतरे रंग की टी शर्ट पहने फोन पे बात करता हुआ प्रतीत हो रहा है और--

यह दृश्य कहीं पहाड़ों का और पानी का प्रतीत होता हैं।

तीन रंग तीन बच्चे बैठे हुए हैं।

जिसके ऊपर लोहे की टीन लगी हुई हैं।

साथ में दो मोटरसाइकिल भी है।

यह फोटो किसी पहाड़ों की दिखाई दे--

साथ में शायद छोटे पोरते पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

इस फोटो में एक डमी खड़ा है।

यह तस्वीर में एक पोस्टर लगा हुआ--

और एक पोस्टर नीचे खड़ा हुआ है।

और इसमें मैनफोर्स भी रखा हुआ--

लाल रंग के टेबल पे पड़े हुए हैं।

साथ में यहां पर एक कुर्सी भी है जोकि चारों तरफ घूमती है।

पीछे हरे रंग की बहोत बड़ी सी मशीन भी रखी हुई है।